यहाँ पे एक सुंदर प्रकृति का दृश्य दिखाया जा रहा है।

तालाब के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे एक विद्यालय का दृश्य दिखाया गया है।

ऊपर की तरफ एक टी_वी लगाया गया है।

रस्ते चारों ओर बहुत सारे डूकानें हैं।

चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक मेजी का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पे एक बोर्ड में इंटरनेशनल बजाज लिखा गया है।

ऊपर की तरफ़ एक व्हाइट कलर का गाड़ी भी है।

यहां पे एक कॉलोनी का दृश्य दिखाया जा रहा है।

रस्ते के चारों ओर घर है।

घर के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बहुत सारे जिम के इक्विपमेंटस है।

जहा पे तीन लोग थिएटर में मूवी देख रहे हैं।

एक ब बोर्ड में जागीरोड लिखा गया है।

और सनसेट का मनोरंजन ले रहे हैं।

यहाँ पे एक पार्क का दृश्य दिखाया गया है।

इंसान बात कर रहे हैं।

बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

जहां पे फुटबॉल कंपटीशन हो रहा है।

सामने की तरफ एक पौधा और बीच में चेयर है।

यहां पे एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पे एक जिम का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पे एक जिम का दृश्य दिखाया गया है।

जिम के अंदर पांच लोग हैं।

यहां पे एक सुंदर नेचर का दिश्य दिखाया गया है।

चारों तरफ से पेड़ घिरे हुए है।

तालाब में एक नाव भी है।

बीचों बीच एक काले रंग का स्टेच्यू भी है।

काले रंग के स्टैचू में शहीद स्मृति लिखा गया है।

यहां पे एक मछली का बाजार का दिश्य दिखाया गया है।